निचे मै पहाड़ दिखाई दे रहा है ये एक आदमी है जो के खड़ा होकर फोटो ले रहे हैं सेल्फ---

इस रूम मे सामने बहुत सी बुक्स और कॉपीस रखी हुई दिखाई दे रही है । साइड मे टेबल और चेयर भी लगा हुआ है । पीछे कॉफी का पेंटिंग बना हुआ है।

यहा पे सामने एक सोफ़ा लगा है ब्लैक कलर का उस के आगे एक व्हाइट कलर का टेबल है | टेबल के ऊपर कुछ रखा है रीमोट भी रखा है ।

पीछे एक ज़ोन टाइप का है जिसमे टेबल चेयर लगा हुआ है ।

यहा पे केकस मिलती है ये बेकरी शॉप है जिसका की विंडो ग्लास का है और ये बहुत ही अच्छा है ।

यहा पे सामने दो तीन टेबल लगे हुए है जिसके साइड साइड मे बहुत सी चेयर लगी हुई है।

और नीचे टाइल्स से फ्लोरिंग की गई है दीवार बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है दीवार पे फेन लगा है टी.वी लगा है ऊपर लाइट लगी हुई हैं।

इसमे भी लाइटिंग बहुत ही अच्छी है ए.सी भी लगा है और दीवाल भी बहुत अच्छा लग रहा है दीवाल को अच्छे से डेकोरेट भी किया गया है नीचे टेबल ऐबल भी लगा सब लगाया गया है।

एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ मे मोबाईल है पीछे वॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

बहुत ही अच्छे से जोक की पेंटिंग की गई है बहुत सुंदर नजर आ रहा है ।

टेबल के नीचे तीन चेयर दिखाई दे रही है और दीवार पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक किचन होम डिनर ब्रेक्फस्ट वाइन --

यहा पे सामने एक टेबल टॉक कैफै है जहा पर एक टेबल है और चार पाच चेयर्स लगाए गए हैं जो की ग्रीन रेड और येल्लो कलर की हैं पीछे वाली दीवार पे बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई हैं।